के पीछे कुछ गमले रखे है जिनमें पौधे लगे है और उनके पीछे चैनल गेट भी है।

में टेंट लगा है उसमें ग्रीन कलर का डेकोरेशन है साइड में वाइट कलर के फ्लावर्स लगे।

और एक साइड में एक पिकॉक रखी हुई है जो की वाइट कलर की है और उसके बहुत बड़े - बड़े पंखे जो जमीन में है।

एक रूम में तीन लोग हाथ जोड़े हुए और अपनी फोटो खिंचा रहे हैं नीचे ग्रीन कलर का कारपेट है उनके पीछे एक चेयर रखी है उस पर कुछ सामान है।

वहां बहुत सारे लोग आए हैं कुछ लोग सामान ले रहे हैं और कुछ लोग वहां अपनी दुकान में सामान बेच रहे हैं।

एक जगह दो कार खड़ी है एक कार वाइट कलर की है और एक कार ग्रे कलर की है।

वाइट कलर की कार आगे का पार्ट खुला हुआ है एक आदमी उसे चेक कर रहा है और एक लड़का वहां खड़ा हुआ है।

एक कपड़ों की शॉप है उसके आगे डम्मी टंगा है उसमें लेडीज के कपड़े टंगे --

उधर पे एक बाम्बू भी है।

एक बड़े से रूम में एक बड़ी सी मशीन है जहां दो लोग काम कर रहे हैं।

वहाँ पे बहुत सारे लोग आए है साइकिल लेने एक लड़का वहाँ पर साइकिल चला रहा है और एक वहाँ पे उसकी फोटो खींच रहा है।

बाइक है अलग-अलग स्कूटी है साइकिल है और बहुत सारी गाड़ियां हैं।

यल्लो कलर का टीका लगाया है और वो कुछ डांस कर रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा है।

आदमी वहाँ पे मछली इकट्ठी कर रहा है और उसने अपने कंधे पे एक तौलिया रखी है साइड में एक आदमी उसे देख रहा है।

और उनके पास में अलग-अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं उन पौधों में अलग-अलग कलर के फूल लगे हैं जैसे गुलाबी पीला सफेद।

एक रोड जा रहा है जहाँ पे बोहोत लम्बी- सी लाइनें वहाँ पे बोहोत से लोग खड़े है अपनी-अपनी बैग टांग कर --

साइड में चार कमले रखे हुए हैं स्टेज पर दो लोग खड़े हुए हैं।

और उसके आगे बहुत सारे जंगल एरिया है उधर बहुत पहाड़ भी है।

एक रोड है उसके साइड में एक बिल्डिंग है और एक ऑफिस है।

एक बहुत बड़ा सा घर है जिसकी साइड में बॉर्डर है जो कि वाइट कलर की है उसके सामने दो पेड़ लगे हुए हैं।

और पत्थर पड़े हुए हैं उस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां हैं बड़ी और छोटी।

साइड में बहुत सारी स्लाइड्स है और साइड में कुछ पेड़ भी लगे है।

एक रोड साइड में एक पार्किंग बनी है और उधर पे बहुत सारी स्कूटी खड़ी है और एक ऑटो रिक्शा खड़ी है.

सारी घांस लगी हुई है और बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

एक कपड़ों की शॉप है जिसमें लेडीज के कपड़े हैं उसके अंदर डमी टंगे उनमें लेडीज के कपड़े टंगे।

ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है और वाइट कलर का हाथ में कपड़ा लिया है।

ब्रिज पे एक आदमी खड़ा है जिसने मेहरून सी टी-शर्ट और एक शॉर्ट्स पेहने--

उसके पास एक ब्लू कलर का कंटेनर रखा है।

नदी के किनारे एक नॉव खड़ी है बहोत बड़ी यलो कलर की उसमे एक टायर बंधा हुआ है।

साइड में रोड पे एक आदमी खड़ा है जिसने माक्स लगाया है और उसके सामने एक लेडी खड़ी है पीछे भी एक नाव खड़ी हुई है।

जो कि रेड और वाइट कलर का है उसके पास बहुत सारी पत्ती है नीचे में टाइल्स लगी हुई है ग्रे कलर की।

उसके सामने मिरर में एक कंघी रखी हुई है और एक बॉटल रखी हुई है उसके बगल में एक आदमी बैठा है जिसने येलो कलर की टी-शर्ट पहनी है।

एक ऑफिस रूम में बोहोत सारे कबर्डस है जिसमे अंदर बोहोत सारी बुक्स रखी हुईं है।

एक रोड पे एक छोटी-सी गाय जा रही है।

स्टेज के ऊपर तीन-चार कुर्सियां रखी है और बीच में एक बड़ा सा सोफा है स्टेज के सामने लैंप लगे हुए हैं।

और उसके आगे बहुत सारे सोफे रखे हुए हैं जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं स्टेज के सामने कुछ लाइट्स भी रखी हुई है।

एक रास्ता जा रहा है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के सामने एक गार्डन टाइप है जहाँं पे एक पेड़ है।

साइड में एक आदमी उसको पकड़ा हुआ है नीचे बहुत सारा कचरा है।

कार के नीचे दो लोग खड़े हुए हैं और उनके पास एक टायर पड़ा हुआ है।

एक शॉप में बहुत सारे बनून लगे ऑरेंज वाइट ग्रीन और शॉप के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है ब्लू कलर का।

एक रोड के साइड में बैंक है उसके ऊपर एक बोहोत बड़ा बोर्ड लगा है ग्रीन कलर का--